और यहाँ फिर से बांधल दिखाई दे रहे हैं।

ना नारंगी और कत्थई कलर का है।

दिखाई दे रही हैं या जहां पर कुछ जानवर --

मैदान की तस्वीर है जहां पे हरी घांस है।

तीन मंजिल बिल्डिंग बनी हुई हैं और इस बिल्डिंग को --

यहाँ पे कई बसे भी खड़ी हुई है कई पेड़-पौधे भी यहाँ पर --

यह तस्वीर एक मेले की दिखाई दे रही है जहां पे कई लोग --

प्लेट में रखा हुआ है और इसमें कई --

टाका गया है और इसमें अ कहीं लाइ इसके आस-पास कई --

काले और सफेद रंग के टी-शर्ट पहनी हुई --

लगाई गई है यहाँ पे स्टील की --

लेडीज भी यहां पे खड़ी हुई हैं।

यह तस्वीर एक डांस एकेडमी की --

डांस सिखा रहे है यहाँ आस-पास कई लाइटे भी लगाई हैं।

लड़की भी यहाँ पर खड़ी हुई है।

लाइटें भी लगाई गई है ऊपर की ओर एक पंखा दिखाई दे रहा है और एक कुर्सी भी यहाँ पर --

खड़ी हुई हैं और एक शटर यहां पर लगाई गई हैं।